यह दृश्य एक सफेद बिल्डिंग का है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।

थंबे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य किसी चर्च के बाहर का है।

साइड में सूखी लकड़ियां हैं।

सफेद इमारतें भी दिखाई दे रही है।

यहां दो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर कार्यालय रोपणी प्रभारी--

जहां पर एक लाल रंग की--

कई सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर किसी दुकानदार की है और--

उसकी दुकान पर अन्य प्रकार का सामन भी रखा गया है।

फूल दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक जिम की--

यह एक घर की तस्वीर है।